और सामने की तरफ बहुत ही घने पेड़ लगे हैं।

और यहां पर पूरा ग्राउंड खाली है आस पास कुछ घास लगी है सामने की तरफ--

और इसमें कुछ टमाटर पके हुए हैं कुछ पूरे कच्चे हैं।

और सामने रोड पर से कुछ कार निकलकर आ भी रहीं हैं कुछ लोग भी हैं।

इन दो लोगों ने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहनी है और एक व्यक्ति ने वाइट कलर की टी-शर्ट पहनी है।

पीछे कुछ टेबल और चेयर रखे हैं चेयर पे कुछ बैग रखे हैं रूम पूरा--

लिखी हुई है और पीछे की तरफ कुछ लाइट्स लगे हैं ए_सी लगा हुआ है।

और यह पूरा जो हॉल है वो व्हाइट और क्रीम कलर से पेंट है यहां पर जगह जगह लाइट लगी हुई है नीचे की तरफ--

ग्रीन और रेड कलर की कारपेट बिची हुई है।

यहां पूरी आसपास में जितनी भी लाइटिंग है सब येलो है।

यहां छोटी-छोटी अलग-अलग डिवाइड में लाइट लगी हुई है जो येलो कलर की--